और एक अ रेस्टोरेंट का चित्र दिखाइ दे रहा है।

यहां पर बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

यहां कुछ अपना अपना काम कर रही है।